बहुत खुबसुरत लग रहा है एक टेम्पू लगल है गाय का बच्चा है और करकट देवल है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कितना अच्छा लग रहा है।

और अंदर में खूब सुंदर पार्किंग जैसा है बहुत सुंदर लग रहा है अगल बगल पेंड़ भी है अच्छा लग रहा है फुल भी है बहुत सुंदर लग रहा है गिफ्ट लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी भी लगल है।

इसका कपड़ा है बहुत अच्छा लग रहा है जेंट्स का कपड़ा बिक रहा बहुत सुंदर दुकान है इतना सुंदर दुकान है ना ए बहुत आये हैं लेडीज लोग हैं बहुत अच्छा लग रहें हैं बहुत खुबसुरत लग रहा है।